वो चीजें लेके आते हैं।

यह एक स्कुल प्रेयर हो रही है।

बहुत सारी तरह के खड्डों से पेपर से आ --

यह एक गार्डन का फवारा है जिसे --

कुछ लोग जाते हैं अपनी ग्यारवीं बारवीं--

आसरा देने के बाद उन्होंने बोले की पढो--

अलग अलग तरह के कलाकृति ब --

मैं चाहू तो ये मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है लेकिन --

अवस्था में फोटो खीच रही है बहुत अच्छी।

वैसे ही सुंदर है ये।

वहाँ कुछ पैसे दिया जाते हैं एक दो ह --

और यहाँ लोग बहुत अधिक पैमाने में--

यह एन्जॉय करने आए हैं शादी यों--

और सेफ्टी बेल्ट पहन के हैं ऊपर जो--

को बनने के लिए बहुत समय लगता है अधिक--

अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं के अच्छी चीज़ है।